और यहाँ कई अधिक मात्रा में जैसे की दो गिटार दिखाई दे रहे है ढोलक दिखाई दे रहा हैऔर गाड़ी का एक हेलमेट भी --

व्यक्ति बैठे हुए नजर आ रहे है कोई आते जाते हुए और यहाँ पर--

और यहाँ पर एक व्यक्ति जा रहा है जिसने एक झ--

दे रहा है जो की काफी सूंदर दिखाई दे रहा है।

नव वो पेहन रखे हुए कपड़े यहाँ प--

अधिक मात्रा में पत्थर दिखाई दे रहे है यहाँ पर।

दिखाई दे रहे है जो की काफी सूंदर है।

नजर नहीं आ रहा है अंदर थोड़े से दिखाई दे रहा है एक-आद व्यक्ति--

और यहाँ पर आसमान थोड़ा सा दिखाई दे रहा है अधिक--

दूर-दूर तक पत्ते हैं पेड़ नजर आ रहे हैं और ये काफी--

सजावट हो रखी हुई है और यहाँ पर पीछे कई व्यक--

पर एक व्यक्ति ने शॉल ओढ़ते हुए नजर जा आ रहे है और एक व्यक्ति ने--